बाहर के लोग घूमने फिरने के लिए आते है। बहोत ही बड़ी-बड़ी पत्थर है।

यह एक स्टेडियम है। यह स्टेडियम में बहोत सारे लाईट लगाये गए हैं । यहाँ --

यह एक बक्सा है। ये बक्से में कुछ सामान रखे हुए हैं।

बस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है।

यहाँ पे नदी में बोहोत ही पानी है। --

यह एक मंदिर है। ये मंदिर बहुत बड़ी है।

फूलते में पूल बनाये गए हैं। यह नदी में --